उस पे कुछ सामान रखा गया है और कुछ जो है आजू- बाजू में दिवार नज़र आ रही है।

गार्डन जैसा एरिया दिख रहा हैं जहाँ पर बीच में से जो एक रास्ता जा रहा हैं साइड में जो हैं बड़े-बड़े छोटे-छोटे पेड़-पौधे नज़र आ रहे हैं और सामने की ओर एक बड़ी सी व्हाइट कलर की बिल्डिंग जो हैं वो दिख रही हैं।

और उनके पीछे एक बड़ी सी दीवार है दीवार पे एक बोर्ड लगा हुआ है और साइड में जो है एक दरवाजा है जो कि एक साइड उसकी खुली है और एक साइड जो है उसकी लगी हुई हैं ।